ये पिक्चर एक स्टोर की और एक चप्पल के दुकान की दिखाई दे रही है और गैस सिलिन्डर दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहुत सारे झाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।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

ये इमेज शिवाजी महाराज की दिखाई दे रही है ।

ये पिक्चर एक मार्केट सुपर मार्केट की लगती है यहाँ पे अलग-अलग शैम्पू दिखाई दे रहे है।

और पूरा पीछे से उसके लकड़ों से बना हुआ कुछ दिख रहा है और चूल्हा भी दिख रहा है ।

और उसके पीछे में पूरा हरा-भरा जंगल दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है ।